घास सब दिख रहा है आदमी मिट्टी दिख रहा है मटर का पौधा सब दिख रहा--

ये यहां पे बैंक है भारतीय स्टेट बैंक ।

हो गई कस्तूरी वाला मशीन है पर्दा लगा है।

हथी दुकान है यहाँ पर आदमी सब थड़ा हुआ है आसमान थोड़ा सा दिख रहा है पोस्टर लगा हुआ है।

और पोस्टर है और घर--

यहां पर गैस है रेड कलर का।

पक्का दिखाता है आदमी का सुबह दिख रहा है।